--चे कार्पेट बिछी हुई दिखाई दे रही है इसका कलर हरा दिखाई दे रहा है कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है लाइटे जलती हुई दिखाई दे रही हैं।